व्हाइट कलर की ओ भी लाइनिंग भी--

साथ में पेड़ पौधे भी है।

और एक किताब पर एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है जो बहुत ही आकर्षक लग रही है।

यह फोटो किसी वॉशरूम की है जिसमें सारे वॉशरूम के--

और दो आदमी स्टेज पर खड़े हैं और यहां पर एक सोफा भी डला हुआ है जहां पर दूल्हा दुल्हन के लिए।

में इसका नंबर है ट्रिपल नाइन सिक्स थ्री डबल जीरो सेवन एट ।

और बीच में द सजाया हुआ है दो टेबल रखी हुई है।

अंगूर को अखबार पर सजा कर रखा गया है।